यहाँ पे काफी अगर आ काफी ही बड़े है जहाँ पे साइकल के जैसे कुछ पुराने से लगे हुए है जो काफी कुछ बड़े-बड़े ट्रीज --

की लेके आ रहे यहां पे काफी बड़ा बड़े रूम बिल्डिंग बना हुआ हैं काफी बड़े हैं दूर-दूर तक खेत है अलग बगल ट्रीज लगे हुए हैं--